कुछ मोटे और छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं और तालाब के किनारे में कुछ बोहोत सारे पौधे लगे हुए हैं जिसमें --

फोटो लिया गया है जहां पर अह हरी-हरी पेड़ उग रहे हैं घास है काले--

लकड़ी के टुकड़े हैं सूखे पत्ते गिरे हुए हैं आजू-बाजू बहोत सारे पेड़ हैं घना सा जंगल है।

बस का जिसमे बहुत सारे लोग जो हैं उतर रहे हैं बैठे हैं चढ़ रहे हैं और वाईट कलर की बस है उस पर एक सी बनी हुई है जिससे चढ़ कर एक आदमी ऊपर जा रहा है।

ब्रिज पे से फोटो लिए गया है तालाब का ब्रिज की कुछ लोहे कि आ मतलब जा साईड की रेलिंगे दिख रही हैं और फोटो जो पानी का लिया गया है उसमे बहुत दूरी से फोटो लिया गया है तो इसमे कुछ घर दिख रहे हैं छोटे-छोटे-छोटे --

एक फोटो दिख रहा है जिसमें ग्रीन का अ ऑरेंज कलर का सूरज डूबते हुए कलर दिख रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के पास कुछ हरी-हरी झाड़ियां है।